यह एक कैफे है। यहां पर बर्थडे का सेलिब्रेशन किया जा रहा है यहां पर बहोत सारे कुर्सी टेबल रखा हुआ है।

मैं एक बेस्त थाना है और यहां पर एक भैंस और उसके--

दिखाई दे रही है आस पास में हरा भरा बहुत ही ज्यादा--

यह एक फ्लावर का दुकान है यहा पे फ्लावर डेकोरेशन का फ्लावर मिल जाते हैं बस एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहे--

न यहाँ पर समान की बहोत सारी ढेर सारी--

यहां खाने का डिश बहोत ही टेस्टी और लाजवाब रहते--

यहाँ आसपास बहोत सारे पेड़े है।

इनमें सेंटर दिखाई दे रही है जिसमें मशीन और कपड़ा भी दिखाई दे--

यह एक बाजार दिखाई दे रही जिसमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मछलियां है जिसमें--

जिसमें लड़कियों दिखाइ दे रहे है बच्चे का खाने का चीज दिखाई दे रहे है।

ये एक नदी टाइप का लग रहा हैं जोकि बगल में पहाड़ भी दिखाई दे रहें हैं और पेड़ पौधे भी दिखाई दे--